ओर उसके फिर पीछे तीन सीसा लगा हुआ है जिसके ऊपर लाइट चमक रहा है | उसके ऊपर एक पंखा है उसके बगल मे भी एक छोटा स पंखा है | ये रूम पूरा व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

इसमें पानी ब्लू कलर का है जिसमें बच्चे लोग नाहा रहे है सामने बड़े लोग है खड़े हुए है लुंगी पेहन के और बिल्डिंग का कलर रेड है रेड वाइट है।

स्टेज है बहुत बड़ा फूलों से सजाया हुआ उसपे एक सोफा रखा हुआ है बगल में आदमी सब बैठा हुआ है कुछ लोग खड़े है।

एक लंबा सा व्हाइट कलर का घर है और आगे पूरा हरियाली है | दो बड़े -बड़े ताड़ के पेड़ हैं ।

और शाम का मॉसम है सूरज डूबनें वाला है और काफी थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका है और पीछे घर के पीछे काफी सारे पेड़ पौधे हैं ।

मीट मसाला गरम मसाला और खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है जैसे बिस्कुट ।